जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक कार पार्किंग की जगह है और ये काफी बड़ी है।

जैसा की आप देख रहे है सामने एक संसद भवन दिखाई दे रहा है और यहाँ संगत की जाती है और यहाँ एक बड़ा गेट दो छोटे गेट दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक विजय हिंस पथिक राजकीय विद्यालय है।

जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ एक काफी बड़ा बोर्ड लगा है जिस पे डाक निरक्षण पूर्वी मण्डल मुजफ्फर नगर लिखा है।